बहुत ही शानदार है पार्क के अंदर --

ये किसी रेलवे स्टेशन का फोटो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार रेलवे स्टेशन यहां पे एक दो तीन कुत्ते बैठे हुए हैं।

ये किसी लैब का फोटो यहां पे दो बलफ लगे हुए हैं फोटो है

ये बहुत ही शानदार मुझे फोटो दिखाई दे जहां पे बह नदी का बहुत बड़ा नदी है ये तो नदी का पानी बह रहा है यहां पे पेड़ भी खड़े हुए यहां पे खंबा भी खड़ा है बिजली का मुझे बहुत सारे पे भी दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं।

और बहुत अच्छा ज्यादा सात होकी है और यहां पे बहुत गंदा हो रखा है यहां पे टायर भी लगी हुई है और यहां पे बल--

रास्ते में बहुत अच्छी साफ सफाई हो रखी है पार्क में एकदम बहुत अच्छी जगह है मुझको पार्क में घुमना बहुत शानदार पार्क --